लपेटे हुए हैं हम। सामने एक साइड पे पेड़ लगाए गए हैं जो हरे रंग के पेड़ हैं। नीचे ग्राउन्ड है जो हरे रंग की। घास उगी हुई है। बगल में घर है जो सफेद रंग की है।

ये सामने एक सब्जी का दुकान है जो बंदे रखे गए है| कुछ फ्रूट भी रखे गए है जो केले संतरे और सेब है| ऊपर के साइड पे केले लटकाए गए है| सामने प्याज और आलू रखा गया है| केरेट में सामान रखी गई है| एक छोटा स तराजू बाट है।

एक बड़ा-सा घर है जिसमें बहोत सारी लाइट लगाई गयी हैं। बहोत सारी नीचे आदमी खड़े हैं। कुछ द्वार पे फूल लगाए गया है। दो ए.सी लगाई गई है। सफेद रंग का एक सामने कार खड़ा है जिसपे बहोत सारे फूल लगाए गए है। लाल रंग के फीते लगाए गए हैं। पिंक कलर --

सामने एक ट्रैक है जो थ्रेसर लगाई गई है और लाल रंग की थ्रेसर है दो आदमी बैठे हुए हैं।

और पीछे एक मंदिर बनी हुई है जो रोड लगी हुई है और काले रंग की आसमान है|

छोटा सा डाक घर है ये जो कुछ लोग अंदर जा रहे हैं एक लेडीज अंदर जा रही हैं पीले रंग का ड्रेस पहने एक छोटी बच्ची हाथ में रखे जो पीले रंग का कपड़ा पहना है।

एक बेड है जो एक आदमी लेटा हुआ है। बगल में भूरे रंग का आ एक खिड़की है और दीवाल का रंग नीला है।

डैम्प बनाया गया जिससे पानी नीचे आ रही है। सफेद रंग का पानी है। दो आदमी एक लेडीज और एक आदमी खड़ा है जो सफेद रंग की कपड़े पहनी हुई और साड़ी पहनी हुई। अगल बगल पेड़ है जो हरे रंग के पत्तियां हैं। सफेद रंग का औ नीले रंग का आसमान छाई हुई है।

सामने की साइड पे एक टावर गड़ा हुआ है जो भूरे रंग का है जो काफी बड़ा टावर है।

ए आदमी लेटा हुआ है जो एक डॉक्टर पैर की मसाज कर रहे। दोनों ने एक ही रंग के सल्ट पहने हुए है। पीछे के साइड पे मशीन रखी गयी है। सफ़ेद रंग की मशीन है।